और यहां पर कुछ छोटी छोटी घास उग रही है।

खंबे की तरफ कुछ व्यक्ति हैं।

उन्होंने नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं।

साइड में एक तख्त है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं।

और टेबल पर एक बोतल लगी हुई है।

इस फोटो में एक प्लेटफार्म का चित्रण दिखाया गया है।

यहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं।

एक आदमी ने हाथ में फोन ले रखा है।

एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक बच्चों का स्लाइडर दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर बैलून चिपके हुए हैं मालाएँ लगी हुई हैं और तीन ए_सी दिख रही हैं।

टेबल के ऊपर कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं और कुछ कंप्यूटर चालू हैं कुछ बंद हैं।

यहां पर कलरफुल लाइटस जल रही है और हीरो हीरो दो जगह लिखा हुआ है।

सामने एक्स वाइट कलर की गाड़ी है।

मशीन दिखाई गई है जो अल्ट्रासाउंड मशीन लग रही है।

में सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।

सामने एक पर्दा लगा हुआ है।

जिसमें कुछ वेंटीलेटर लगे हुए हैं जिनके अंदर ए_सी लगा हुआ है।

ग्राउंड में पेड़ खड़े है जो कुछ छोटे पेड़ है कुछ बड़े पेड़ है।

यहां पर लकड़ी की कोई विंडो रखी हुई हैं।

व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

इसमें ई खड़ी हुई है।

अलग अलग कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

जो सेल्फी में आ रहा है।

ऊपर कुछ झूमर लटके हुए हैं।

इसमें कुछ लेडिस ड्रेस टंगी हुई है।

और सामने में मेमसार फैशन बैंकुट लिखा हुआ है।

और उसके पीछे तीन औरतें खड़ी हैं।

मैंने एक हाथ अपना टोकरी पर रखा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है।

टीन की छत बनी हुई है।

इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है।

जो सेल्फी ले रहा है।

और साइड में क्रैड रखी हुई है।

यहां पर एक बैंक का चित्रण दिखाया गया है।